उसका एक हाथ उपर है और एक हाथ नीचे है नीचे जो --

सामने डेस्क पे पेन और कैंची रखा हुआ है बुक रखी है और कैलकुलेटर भी रखा हुआ है।

यहाँ पे काले कलर के प्लेट में बर्गर रखे हुए हैं।

ऊपर की साइड पे आसमान नीला सफ़ेद गेहरा रहा है और निचे भी छोटी-छोटी हरी घांस दिखाई दे रही हैं मिट्टी दिख रहा है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में सफ़ेद कलर का कपड़ा है और उसने टीशर्ट पहना है।

आ मूंग क कलर का और पीछे की साइड एक इंसान है जिसने हेलमेट पहना हुआ है बिजली का बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ टेडी कार्टून रखे गए हैं जैसे एक नाटक है छोटा भीम उसका भीम है।

जिस पत्तियों का हरा कलर दिखीई दे रहा है सामने पेड़ों की शाखा दिख रहीं है।

यहाँ पे बहौत सुंदर ही इस मकान को सजाया गया है छोटी-छोटी कलरफूल लाइट लगाई गई है।

यहाँ एक रूम है जिसपे लिखा है फीमेल जनरल वार्ड और इसमें एक बीएड लगा हुआ है जिसपे नीली चादर है।

यहाँ सामने आप देख सकते है लाल कलर का मंदिर नुमा बना हुआ है जिसमें मोमबत्त --

तियाँ जल रही हैं बहोत सारी और यहाँ पे बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं सामने एक सफ़ेद --

यहाँ पर बहोत सारा वूलन यानि की ऊन का कलेक्शन रखा हुवा है जो लैडीज का है।

यहाँ पर शादी हो रही है दूल्हा और दुल्हन निचे बैठें हुए हैं और यहाँ पे स्टील के दो बड़े से बाउल रखें हुए हैं।

मंदिर काफी कलरफुल है और यहाँ पे पेड़ों की पत्तियां दिखाई दे रही है।

यहाँ एक सामुदायिक केंद्र है जिसपे लिखा भी है।